इमारत के खिड़कियों का रंग कला हैं।

यहाँ पर कुछ रंग-बिरंगे गेंदे इन गेंदों का रंग नीला हरा और काला सफ़ेद दिख रहा है।